जो कि काफी अच्छी काफी सुन्दर दिखाई दे रही है और इनको बनाने के अन्दर जो सामान लगता है वो शायद ऊपर की साईड में दिखाई दे रहा है और इनके ऊपर शायद ये सिल्वर कलर का लेप किया हुआ है जो कि काफी सुन्दर दिखाई दे रहा है।

और शायद कोई कस्ट अ मरीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्या पता वो दूसरे हॉल में ब --